एक हॉस्पिटल है यहाँ एक नर्स एक आदमी का खून चेक कर रही है यहाँ सुविधाजनक पूर्ण है यहाँ ए--

यह एक बेस्ट टाइप का डिब्बा रखा है यहाँ बहुत सारी चीज दिख रही है या खिड़की भी है।

ऐसा लग रहा कि यह कोई फिल्मी थिएटर है यहाँ बहुत सारी कुर्सी है यहाँ बहुत सारे लाइट लगे हैं यहाँ बहुत सारे इंसान है यह बहुत सारे टाइल्स लगे हैं फुगे -उगे लगे हैं।

कुछ फोटोस अच्छी दिख रही है हमने यहाँ खिडकी दिख रही है य यहाँ एक बेल बजाने का टोक दिख रहा है यहाँ हमने आज एक ओटो दिख रहा है अच्छा है|

सी.सी.टी.वी कैमरा तक लगे हैं यहाँ बहुत सारी लाइट जल रही है।

दिख रही है यहाँ एक दुकान दिख रहा है डेली-डेलीनीड्स एवं डेयरी यहाँ सिरी एके पाइप यहा बहोत सारी ईटे दिख रही कमरे दिख रहे अंदर मे बहोत सारी लाइट है इधर बहार मे बाइक रखे हुए है ईधर--